फलावर्स भी दिखाई दे रहा है येलो कलर में खिलते हुए।

इसमें जो है रेड तरह का सोफा सेट दिखाई दे रहा है मुझे।

कलर जो है येलो और ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है।

जो इसमे वाइट कलर और ब्लैक कलर का कैमरा जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

सामान सारे दिखाई दे रहा है।

बाहर में जो है कोकोनट ट्री जैसा और ये पॉम ट्री जैसा दिखाई दे रहा है मुझे--

जिसका फेस जो है ब्लर करके दिखाई दे रहा है।

सभी लोग जो है हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

इसमें टीना दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।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

इसमें वाइट कलर का होल्डर भी एक ठो दिखाई दे रहा है।

घर भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

मुझे इसमें घर जैसा दिखाई दे रहा है दुकान भी दिखाई दे रहा है।

दुकान जो है मुझे व्हाइट कलर में देखने को मिल रहा है और उसमें जो है एक ठो आदमी दिखाई दे रहा है।

इसमें ये मुझे बहुत सारे घर भी दिखाई दे रहा है।

बाइक दिखाई दे रहा है ऑटो दिखाई दे रहा है मुझे इसमें और बहुत सारे आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

इसमें जो है मुझे सीसा दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।

बास में जो है विशा लिख के दिखाई दे रहा है।

गरी जो है इसमें जो है थोरा ग्रे टाइप में दिखाई दे रहा है।

बाहर में जो ये बहुत सारी बाइक्स और गाड़ी भी एक ठो दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में।

पिछे में जो है ब्लू और ग्रीन कलर में माउंटेंस दिखाई दे रहा है

इसमें बहुत सारे ग्रास दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बाइक स्कूटी बहुत सारा दिखाई दे रहा है और अंदर में गाड़ी भी व्हाइट कलर में बढ़ती दिखाई दे रहा है।

नीचे मुझे है घर दिखाई दे रहा है बहोत सारे घर दिखाई दे रहा है घर जो है अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है।

मुझे इसमें घर भी दिखाई दे रहा है वाइट कलर में।